पिक्चर में एक जमीन है उसके ऊपर दो पिलर है और उसके आस पास डिज़ाइन वाली ग्रिल लगी है जिससे पीछे एक गोल राउन्ड बना है।

एक की दुकान के बाहर का फोटो है।